घर के बाहर सीढ़ियां लगी हुई हैं जिसका काम छत पे जाना होता है।

यहां पे पेड़ों को काट करके--

टी_वी कुलर फ्रीज वाशिंग मशीन ये सब चीजे खरीद सकते है।

और यहां पे लाइट्स लगी हुई--

यहां पे कुछ लोगों का समूह आके पार्टी करेगा एवम--

सामने हम एक आम का बगीचा देख सकते हैं।

यह एक घर है जोकि अभी बन रहा है।

सवारियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इस्तेमाल की जाती है।

यह एक खेल का मैदान है।

खिलाड़ियों की संख्या बाइस हो जाती है इस खेल के मैदान के आसपास--

एच_डी_एफ_सी बैंक के साथ में एक यूनीसेक्स सैलून भी है जिसमें लोग बाल कटवाने के लिए आते हैं।

कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी रखी हुई हैं।

बहोत अलग अलग तरह की कुर्सियां देख सकते हैं जोकि लोगों को बैठने के लिए लगी हुई हैं।

इसमें डी_जे को बजाने के लिए दो व्यक्ति भी खड़े हैं इसका नाम नवज्योति मंडल है।

मोचा अमूल मिल्क चॉकलेट --

इनके पास प्रिंटर भी है जिसको इन्होंने--

जिसपे हम अलग अलग तरह की सब्जी एवं फल देख सकते हैं।